यह एक बोहोत घना जंगल है। यहाँ पे एक पर्वत है। यह बहुत ही बड़ा है। यहाँ पहाड़ पे बोहोत सारे लोग घुमने के लिए आए हुए है।

एक हॉस्पिटल है यह हॉस्पिटल बहुत बड़ा है इस हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग इलाज कराने के लिए इस अस्पताल में आते है।

यहाँ पे एक मंदिर है यह मैदान में बहुत सारे पूजा करने के लिए बहुत सारे आदमी आये हुए है।

यह एक बस स्टॉप है यहाँ पे एक बस खड़ी है यह बस नीले रंग की है एक आदमी बस के पास खड़े हैं ।

यहाँ पे बस में बोहोत सारे सवारी बेठे हुए हैं। यह बस रुकी हुई है। यहाँ पे काफी बॉउन्ड्री के बाहर बोहोत सारे पेड़ पौधे लगे --

पे घर बनाये जा रहे है यह घर बहुत ही पुराना है काफी खण्डर हो चुकी है इसके ईटे ढह चुके है यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ हैं।

यह एक मैदान है यहाँ पे हॉकी खेल रहे है यह मैदान में बहुत सारे घांस लगे हुए है इस मैदान को हॉकी मैदान बनाये गए है।

यह होटल में सभी चीज का इंतजाम अच्छे से किया गया है यहाँ पे बहुत सारे आदमी इस होटल को शादी बिवाह के लिए बुक करते --